एक मूर्ति काले रंग की है दो मूर्तिया सफेद रंग की है यहा पर एक लेडी है जो बीच वाली मूर्ति है वो काले रंग की है और जो आसपास दो मूर्तिया है वेह सफेद रंग की है।